और एगो स्कार्पियो लगल है गाड़ी फोर व्हीलर लगल है एको ग्राउंड है हरा-हरा ग्राउंड है एगो पोल खड़ा है ग्राउंड में।

सामने एगो बहु चार पाँचगो बाजा लगल है एगो बाजा लगल है एगो मस्जिद में मजिदवा पर एगो टंकी रखल है टंकी के बगल में एगो बाजा रखल है।

बिल्डिंग के बगलवा में य चार-पाँचगो पान बहुत सारा पेड़ है ओकर पीछे ए पहाड़ है और तलाऊवा के आगे घ दीवाल बना हुआ है जबकी बना हुआ पूरा काम चलने लगा है पिलर बनाओ ओकरे।

हरा हरा पूरा घाँस उगले पहाड़ पर घास उगाल है घास बहुत बड़ा पहाड़ है पहाड़ के नीचे पूरा हरा-हरा पेड़ है।

उल्ला रखल हाय रस्गुल्ला रखल हय पनीर रखल हय एगो कटोरी रखल हय।

ओकर बगलवा में एगो एगो आदमी खड़ा है आदमी खड़ा मंदिलवा देखे में अच्छा लगल है धूप उगल है ऊपर में आसमान बादल छाल है।

मिच नीचे एगो मेट बिछाले लाल कलर की मेट है देखने मै अच्छा लाग रहल है दोनों तरफ माला से सजले फुल से सजाल हाय।

वो बहुत पहाड़ लसना काला काला पखाल है पहाड़ पर से पानी गिरा था पहाड़ से पूरा काला काला पानी गिरा था और के साथ में नीला नीला पानी गिरा --